यह एक घर है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है इसके आसपास हमें पेड़ दिखाई दे रहा है जिससे इस घर की शोभा और अधिक बढ़ रही है इसकी डिजाइन और सुंदर दिखाई दे री है।

यहाँ पर बहोत ही भीड़ दिखाई दे रही है जहाँ पर लोग अपना दवाई लेने आए है यहाँ पर साइकिल एवं गाड़ी दिखाई दे रहा है यह रात का समय है बहोत ही लाइट लाइट दिखाई दे रहा है।

यह घड़ी डिटर्जेंट कंपनी वाले लोग यहाँ पर अपने घड़ी प्रोडक्ट को स्क्रीन में दिखाकर लोगों को अपने--

ए. पी. जी. बी. लेजर प्रोजेक्शन है जिसमें आप बैठे-बैठे किसी भी चीज को देख सकते है यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते है यहाँ पर टॉकीज की तरह‌ आप यहाँ--

यह एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहोत ही बड़ी खम्बे इतने बड़ी लाइट दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर बस दिखाई दे रहे है जो खड़े है एवं यहाँ पर बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देरी है जहाँ पर लोग रह सकते है एवं बहोत ही सारी गाड़ी दिखाई दे रही है।

--और यहाँ लाइट दिखाई दे रहा है और छोटा सा रूम यहाँ सोते होंगे और चारों और अंधेरा छाया--

य इसकी कटाई की गयी है जहाँ पर --

यह एक नरसिंग होम है जो यहाँ पर बच्चे लोग आकर अपना नर्सिंग कोर्स कर पूरा कर सकते है जिससे--

डॉक्टरी की पढाई करने में बोहोत ही--

ज्ञान प्राप्त होता है जिससे व्यक्ति की जानकारी बढती है।

यह एक अंधेला सा रूम है जहां पर झूले व --